इतनों बड़ो ग्राउंड से नीचे ट्रेक्टर खडयो छे नीलो आसमान छे बिल्डिंग के ऊपर टॉवर लाग रेहो छे अठे सीढ़ी लाग री --

बढ़िया फर्श होरे छे ईटा को बढ़िया आसमान होरे छे और ये कितना शानदार लाग रे छे।

बहुत सारा छोरा ग्राउंड में खड़ेया छे कितना शानदार ग्राउंड स बहुत ही बड़ा ग्राउंड स।

यह कितनी शानदार जगह छे ऊपर पंखा लाग रे छे बड़े छत पर डिजाइन हो री छे।

बीच में पानी जो खूब सारो सामने मंदिर छ बढ़िया फवारो लाग रयो छ बीच में बढ़िया यहां पर देखो कनी शानदार देखबा की जगह छ।

बड़े झूलवा की नाव लाग री छे खम्बा लाग रेहा छे पेड़ पौधा लाग --